जिस पे पार्किंग टाइल्स लगा हुआ है ।

उसके सामने एक बैनर लगी हुई है उसपे वेलकम लिखा हुआ है।

ये बहुत ही खूबसूरत सा देखने को लग रहा है।

वह बिना प्लसतर पेंट का है।

इसकी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं ।

बेंच पे पानी की बोतल रखी हुई है।

पेन कॉपी रखे हुए हैं।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक हाल की तस्वीर दिखाई दे रही है जो बैलून से सजाई हुई है।

गीन कलर की घास उगी हुई है।

इस दृश्य में एक शॉप की तस्वीर नजर आ रही है जिसकी रैक पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं ।

इस दृश्य में एक ट्रेडमिल की तस्वीर नजर आ रही है जो ब्लैक और वाइट कलर की है।

दीवार लाइट ग्रीन दिखाई दे रही है।

खिड़कियां दिखाई दे रही है एक ऑटो दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

एक आदमी खड़ा है जो कुर्ता लूंगी पहने हुआ है।

ईट रखी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक शॉप की तस्वीर दिखाई दे रही है।

बस के छत पे कुछ सामान रखे हुए हैं।

दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में रेलवे स्टेशन का तस्वीर नजर आ रहा है।

वहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई है जो रेड कलर की है ।

इस दृश्य में कुछ लोग नजर आ रहे है जो बड़े से टाइल्स को दो चक्के की मशीन पे रख ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रखा हुआ नजर आ रहा है।

बाईकें के खड़ी है एक बस नजर आ रही है और दो आदमी दिखाई दे रही है।